नीले कलर की शर्ट पहने नजर आ रहा है और हमें यहां पर बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे जो कि बोहुत दूर-दूर तक फैले हुए नजर आ रहे हैं।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग का दीवार का कलर हमें यहाँं पर सफ़ेद नजर आ रहा है। बिल्डिंग में हमें बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई दिखाई दे रही है। खिड़कियों का कलर हमें काला दिखाई दे रहा है और हमें बहुत सारे पिलर बने हुए नजर आ रहे जो कि सफेद कलर कि दिख रहे है और हमें यहाँं पर बहुत सारे --

बहुत ही बड़ी नर्सरी दिखाई दे रही है जिसमे की हमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहें हैं और हमे यहां पर बहुत सारे गमले दिखाई दे रहें हैं।

बहुत ही बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा है| गार्डन मे हमे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है| पेड़ हमे बहुत दूर दूर तक फैले हुए नजर आ रहे है| साथ ही साथ हमे बहुत सारी खाली जमीन दिखाई दे रही है जो भी एक सड़क की तरह नजर आ रही है| उसमे हमे बहुत --

बोहत ही बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है | पड़े हमें दूर-दूर तक फैले हुए नजर आ रहे हैं जो कि हरे कलर के नजर आ रहे है और हमें यहाँ बोरिया दिखाई दे रही है।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

बोहोत ही बड़ी स्कूल दिखाई दे रही है| स्कूल के ऊपर बोहोत सारे बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं |बच्चों के पास हमें यहाँ पर बोहोत बहुत सारे गेट दिखाई दे रहे है जोकि लोहे के नजर आ रहे है और उसका कलर हमें यहाँ पर नीला दिखाई दे रहा और हमें यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहाँं पर एक बोहोत बड़ा बाजार दिखाई दे रहा है। बाजार में हमें ट्रैक्टर नजर अ रहा है। ट्रैक्टर का कलर हमें नीला दिखाई दे रहा है साथ ही साथ हमे यहाँं पर गेहूं चुनने वाली मशीन दिखाई दे रही है जिसमें कि धान डाल कर गेहूं निकाले जाते हैं। मशीन का कलर हमें यहाँं पर लाल दिखाई दे रहा है।

फी बीचा में गेहूं का पहाड़ दिखाई दे रहा है और हमें यहां पर बहु सारी बोरियां रगी दिखाई दे रही है। पीला कुछ सफेद --

और हमें यहां पर एक बोत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग के दिवाल का कलर हमें यहां पर अफेद दिखाई दे रहा है और उसके अंदर हमें बहोत सारी खिड़कियां नजर आ रही है।